और दोनों साइड की छोटी-छोटी मूर्तिया है।

ये खेत हैं इस खेत में फसल हैं जो कि बहोत हरी-भरी हैं।